ये किसी बहोत बड़ी फैक्ट्री का चित्र है जहां पर बहोत बड़े बड़े एंगल लगे हुए है और मकान भी बने हुए है।

इधर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जोकि इस फ़ोन पे बात कर रहा है और उधर छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए है।

एक मैरिज लॉन का चित्र है जहां पर एक स्टेज बनाया गया है। स्टेज में भिन्न-भिन्न प्रकार की लाइटें लगी हुई हैं।